क्योंकि शोरूम में वाइट पेंट हुआ है और छत में लाइटें भी लगी है।

काउंटर रखा है शोरूम में काउंटर पर कुछ शर्ट और कुछ पैंट रखे--

के अंदर बहुत सारा सामान टेबल दिखाई दे रही है।

खेल के ग्राउंड में कुछ बच्चे खेलते पोल घेरों में नजर आ रही है जिन्होंने अलग अलग ड्रेस पहनी है।

यह एक पहाड़ का इलाका है।

इस दुकान के अंदर बैठकर चेयर पर कुछ व्यक्ति चाऊमीन मोमोज खा रहे हैं।

ऊपर की ओर इस बिल्डिंग में पीला कलर हुआ है।

सोफो पर गद्दे भी रखे हैं सोफे बहुत ही सुंदर हैं।

दो तीन दुकान दिख रही है इन दुकान पर अलग अलग प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं।

यह एक कार वर्कशॉप है।

कार वर्कशॉप में बहुत सारी कार लाइन से खड़ी हुई--

और इस मकान के गेट पर एक बैनर लगा हुआ है।

केक की दुकान में एक फ्रिज रखा है जिस पर पेप्सी लिखा हुआ है।

यह एक विद्यालय का ऑफिस है।

रोड पर एक एक्टिवा दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्लैक है।

यह एक रेस्टोरेंट है इस रेस्टोरेंट के अंदर छत में बहुत ही सुंदर पेंट हुआ है।

लाइटें भी लगी हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर चेयर पर बैठकर कुछ व्यक्ति खाना खा रहे हैं।

यह एक परचून की दुकान है।

यह एक क्लास रूम है इस क्लासरूम के अंदर चेयर पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

और लाइटें भी इस बाजार के अंदर लगी हुई है।

पीछे की ओर कुछ और भी पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पर कुछ लेडिस और कुछ आदमी एक्सरसाइज कर रहे हैं।

इस पे सिलाई का फोटो सिलाई मशीन का फोटो उतरा गया है।

यह एक कंपनी है इस कंपनी के अंदर टीन पड़ी हुई है।